बनाया हुआ है और यहां कुछ लोग खड़े हैं।

पंखा भी लगा हुआ है और पीछे एक चेयर भी पड़ी हुई है।

ये एक स्कूल है यहां पर बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं।

सामने एक हॉल है यहां पर कुछ लड़के कुछ लड़कियां--

सामने कुर्सियां टेबल लगे हैं और लोग बैठे हैं।

यहां एक कुर्सी भी रखी हुई है।

और यहां फूल भी टंगे हुए हैं नीचे--